पानी के उप पानी मे कुछ लोग भी अ चलते हुए नज़र आ रहे है बिल्डिंग जो है वो लाल एवं पीला कलर का है रास्ते मे म इलेक्ट्रिक पोल भी है।

दुकान मे वो एक वाला यंत्र रखा हूआ है दुकान फका लग रहा है कोई लोग नही दिख रहा है दुकान के अंदर।

सफ़ेद मे चुनसे डाग भी टना हुआ है बहुत ही सुंदर लग रहा है।

जोकि हरे-हरे भरे पेड़ से पूरा ढका हुआ है तालाब की चारों तरफ ही बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे है आसमान नीला एव सफ़ेद कलर का नज़र आ रहा है।

सामने एक सब्जी मंडी नज़र आ रहा है यहा पर बहुत सारा सब्जी रखा हुआ है।

हे एक फ्रूट का दुकान नज़र आ रहा है जहा पर बहुत सारे फल रखा हुआ है उसके बगल मे बहुत सारे फलोका दुकान है।

सामने बड़े बड़े कुछ पहाड़ नजर आ रहा है अँड कुछ घर भी नजर आ रहा है पहाड़ पूरा हरे हरे पेड़ पौधों से ढका हुआ है।

यहाँ और एक लाइट भी नजर आ रहा है आसमान नीले रंग का दिख रहा है।

तस्वीर मे कुच्छ स्टील का ग्लास बहोत सुंदर तरीकेसे सजा हुआ है ग्लास के पिच्छे एक दीवार है जोकि हरे रंग का है बहोत ही सुंदर लग रहा है।

सामने एक प्लेटफार्म नजर आ रहा है जहां पर कुछ लोग एवं कुछ कुत्ते बैठे हुए हैं।

सामने कुछ बड़े-बड़े बिल्डिंग नजर आ रहा है यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग है दोनों साइड के बिल्डिंग के बीचो-बीच एक स्विमिंग पूल है।

जिसका जल बहुत ही साफ और स्वच्छ है बिल्डिंग के सामने चारों तरफ बहुत सारे छोटे-छोटे पेड़ पौधे लगा हुआ है आसमान नीला है और सफेद ढका हुआ है।